यह देखने में भी बोहोत ही सुंदर लग रहे है यहाँ पे बोहोत ही अच्छे आदमी है।

यहाँ पे शादी के लिए मंडप बनाये गए है मंडप में बोहोत सारी औरत बैठी हुई है यहाँ पे कुछ बच्चे खाना खाने के लिए भी आए हुए है।